नीचे से एक बंदा इस गाड़ी को वाश कर रहा है यह वाशिंग का दुकान है यहां पे हर प्रकार के व्हीकल की फॉर व्हीलर की वाशिंग की जाती है।

और इस मित्रा से करते करते एक मंजिल तैयार कर देंगे।

ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर तीन कलर तीन कलर के बैलून लगे हुए हैं।

जो ई सामने हमारे को बास्केट भी दिखाई दे रहे हैं हम वहां से समान लेकर और बास्केट में डालके फिर आगे काउंटर पे जा के इनका बिल बनवा स--

इस पिक्चर में हमारे को सामने एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है तेजा बुक स्टोर --

इसमें बैंबू दीवारें बना रखी हैं जो की ठंडी रेहती है।

और सामने हमारे को एक काउंटर दिखाई दे रहे जहां पे की सब्जियों के डोंगे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

अपना यहां से गाड़ी लेंगे और चले जाएंगे बच्चे भी बस में बैठ--

और इधर अह अ राइट साइड पे आके हरे रंग की और भी मशीनें बहोत सारी र--

जो हमारे को यहां पे एक सीन दिखाई दे रहा है यह एक आश्रम का सीन है। जिस आश्रम का नाम है श्री भजन आश्रम--